वहां एक आदमी भी है जो बैठ के कुछ काम कर रहा है ।

साफ से दिख नहीं रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है।

अगल-बगल दो ट्रेन के जाने की पटरियाँ भी बनी हुइ है ।

हरियाली भी बोहोत सारी है और वो मुझे नजर आ रहा है इसमें --

इसमें बहुत सारी पेटिंग्स है मत --

और हाँ ये जो दुकान है ना उसके अंदर ना बैलून लगाया गया है फ्लैग कलर --